टेस्टी लगती है खाने में ये आलू टिक्की --

वो शो के झाड लगे हुए हैं।

पीछे एक चक्र है जो कृष्णा के साथ हमेशा रहता है।

टंकी की तरफ जाने के लिए --

और बड़ी सी भी है।

और घूम फिर के सब --

छत बनाई हुई है उसके ऊपर सजावट की गयी है।